बैंक का नाम है एस_बी_आई और इसके बाहर बहुत सारी स्कूटी और बाइक खड़ी हुई है।

यह एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि एक छत की रेलिंग दिख रही है।

यह एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि यहां पर दो महिलाएं संगीत गा रही हैं।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

कमरे के अंदर तीन फ्रिज रखे हुए हैं अलग अलग प्रकार के।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

मंदिर के बाहर बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

यह एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि एक शॉप बनी हुई है शॉप के अंदर टेबल लगी हुई है टेबल के ऊपर दो कंप्यूटर रखे हुए हैं।

यह एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि एक हाल बना हुआ है इसमें बहुत सारे सोफे और मेज रखी हुई है मेज के ऊपर बहुत सारे फ्लावर रखे हुए हैं और थोड़ी ही दूर पर एक टेबल लगी हुई है।

यह एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि स्कूल क्लास चल रही है।